बैंक हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ कि हमारा पैसा और प्रोपटी सेफ से रह सकता है बैंक में हम लोग अपना सुविधा के लिए पैसा जमा करते है बैंक बहुत ही जरूरी है हमारे --

ये एक वाटरपार्क है जो कि जहाँ सभी लोग गड़मी के मोसम में टूरिस्ट करने जाते है। वाटरपार्क बहुत अच्छे-अच्छे शहर में होते है बड़े-बड़े शहर में वाटरपार्क पाए जाते है। वाटरपार्क बहुत अच्छा जगह है जहाँ हम लोग की मनोरंजन के लिए जाते है और यहाँ स्विमिंग पुल वगेरा होता है जिसमें हम लोग स्विमिंग करते है।

इस लिए साईं भगवान को मेरा एक बार फिर से प्रणाम जय साईं राम।

किराना दुकान हर एक गली मोहल्ला टोला लखीसराय में सबसे किराना वहां है जहाँ आपको देखना है वहां जा के देख सकते है इसलिए किराना दुकान भी हमारी लाइफ में होना जरूरी ही हो --

यह एक शादी का स्टेज है जहाँ लडकी और लड़का जयमाला करते हैं और इंगेजमेंट भी करते हैं जिनको जिन प्रकार का जो भी करना होता है।

लोग अधिकतर शादी में देखते है सभी लोग अच्छे से अपना करते है शादी बियाह ।

जिसमे जो भी लगता वो अपना यूज़ करते है और लोंग ड्राइव के लिए निकल पड़ते।